पैयाँ भी दिख रहा है एक मशीन भी लगी हुई है और खूब भी दिखाई दे रहा है बड़े से पेड़ भी दिख रहे हैं बहुत सारे दिख रहे हैं और उप्पर बादल भी दिख रहा है।

मकान दिखाई दे रहा है मकान गोल्डेन कलर पेन्ट हो रहा है एक नीले कलर के येल्लो ये स दो पोस्टर भी लगा हुआ है ये कुछ गेट भी दिखाई दे रहा है पीला रंग भी दिखाई दे रहा है बहोत सारे--

ऊपर गुब्बारे लगे हुए लाल कलर के पीले कलर के हरे कलर के नीचे बहुत रेड कलर की कुर्सियाँ रखी हुई है इसमें कुछ लेडीजे बैठी हुई है कुछ जैंट्स बैठे हुए हैं।